पराठे रखे हुवे है बोहोत ही पण सुंदर पराठे रखे हुवे है उस के आसपास एक टेबल पर रखे हुवे है एक टेबल पर रखे हुवे है पर बोहोत ही अच्छे-अच्छे रखे हुवे है।

टेबला रखी हुए है यहाँ पर ख़ुर्शी रखी हुइ यहाँ पर बोर्ड ब्लैक ब्लैक बोर्ड लगा उस पर बोत सारी चित्र बनी हुई है।